यहां पर एक ग्राउंड की तस्वीर दिखाई दे रही है। ग्राउंड में बोहोत से छोटी-छोटी घासें दिख रही हैं।